और आगे एक ग्रीन कलर का बास्केट नीचे रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में हमें एक लार्ड बुद्ध का स्टेचू दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में हमें एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इसके ऊपर टंकी रखी हुई दिखाई दे रही है।

उसके नीचे हमें एक छोटा सा नदी दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है।

इस फोटो में हमें एक नदी दिखाई दे रहा है।

नदी के ऊपर एक बड़ा सा ब्रिज दिखाई दे रहा है।